निचे कुछ घड़े जैसा रखा हैं एक पटाव रखा हुआ है दिखाई दे रहा है।

दूर एक रोड भी दिखाई दे रही है वहाँ पर भी इटो--

और पेंट पेहना हुआ है शर्ट पेहनी हुई है और गमछा बाधा हुआ है बस बिल्कुल मैदान--

उसके पास बगल में एक पोस्टर लगा हुआ है एक फैन रखा हुआ है।

चारो और पानी भरा हुआ है बरसात का मौसम है ऊपर बादल दिखाई दे रहै है बादल काफी--

जिसकी शाखायें बहुत लम्बी - लम्बी दिखाई दे रही है और एक आदमी खड़ा हुआ है।

चारो तरफ बाउंड्री दिखाई दे रही है काफी सारी मिट्टी दिखाई दे रही है।

दोनों छोर से बंधा हुआ है वहीं पे सर्किट लगी हुई है एक बोरी में भी काफी सारी --

जैसा की आप देख पा रहे है सामने की ओर एक दरवाजा लगा हुआ है।

जैसा की आप देख पा रहे है सामने की और एक स्टेज है।

शेरवानी पहने हुए है उसके बगल में एक लड़का खड़ा हुआ है उसने ऑरेंज रंग का --

उसने अपने गले में एयरफ़ोन डाला हुआ है एक बोटल लिया हुआ है बिसलरी की--

जैसा की आप देख पा रहे है एक भारतीय स्टेट बैंक है।

बोहोत सारे पोस्टर लगे हुए है और कुछ एक आदमी के हाथ दिखाई दे रहा है बाहर एक पर्ची दिखाई दे रही हैं।

पुलिस की गाड़िया काफी सारी खड़ी हुई दिखाई दे रही है सभी--

उस कॉफ़ी कप से चाय निकलती हुई दिखाई दे रही है।

लेकिन वे पेड़ है पेड़ काफी लम्बे है।

जैसा की आप देख पा रहे है सामने एक दरवाजा है उस दरवाजे के दोनों ओर एक औरत आदवासी और एक आदमी--

आदवासी खड़े हुए है। एक आदमी हाथो पे से अम हाथो से बजता हुआ--

ताकि आप देख पा रहै है एक उस्म उ उर्स मुबारक --

पानी नीला गिरता हुआ दिखाई दे रहा है पानी पूरा सफेद रंग का दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गिराता हुआ--